ताकि घर जल्दी जल्दी बने | इसमें काफी टाइम लग जाता है अभी सामान भी अंदर ऐसा ही पड़ा रहता है बहुत सारी ईंट लगी--

जो बहुत ही अच्छी तरीके से लाइट्स डिस्को लाइट्स और फूलों से सजाया गया है।

ये शादी का एक हॉल है। ये बोहोत ही ज्यादा सुंदर तरीके से सजाया गया है। फूलो से रंग बिरंगी लाइटों से इसको सजाया जाता है।

शादी का स्टेज है जहाँ पर जो नए दूल्हा या दुल्हन है वो कुर्सी पर बैठेंगे।

ये कट्टे किसी भी चीज के हो सकते हैं | अब ये रिक्शेवाले को दिया गया है कि ये इसको लेकर जाएगा जहां भी इसको पहुंचाना हो ।

सर्विसिंग के लिए जो भी कार में दिक्कत होती है मैकेनिक उसको देखता है और सही करता है।

मेकेनिक ही इसके अंदर की चीजे देखेगा और जो भी खराबी है उसको सही करेगा। कार के बाहर का हिस्से को खोल कर देखा जा रहा है।

सुंदर सा मकान तैयार हो जाएगा।

डेयरी एंड स्वीट्स यह एक दुकान है जहां पर हमें दूध की सारी चीज जैसे दही पनीर --

यह किसी अ कैफ़े के अन्दर की दुकान का चित्र है।

यहां पर कार की सर्विसिंग की जा रही है। कार को अच्छी तरीके से धोया --